बेसिन लगा हुआ है शायद ये अह हेयर सैलून का--

यहां पर दो बड़े बड़े आईने लगे हुए हैं और काफी ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी दिखाई दे रहे हैं और ये काफी सुंदर भी दिखाई दे रहा--

ये फोटो एक डियर का है जो कि बहुत ही सुंदर ब्राउन कलर का है और इसकी--